ये एक कपड़े का शोरूम है जिसमें तीन मूर्तियां हैं तीनों पर अलग अलग--

कपड़े पहनाए गए हैं एक कपड़ा लाल रंग का दूसरा नीले व हरे रंग का और तीसरा काले व नीले रंग का।

ये एक नाई की दुकान है जिसमें एक कस्टमर --

ये एक मोबाइल स्टोर का केबिन है जिसमें--

इत्यादि बैडमिंटन जैसी चीजें भी रखी हुई हैं।

ऊपर इसका नाम श्री हिंगलाज बुक डिपो दिख रहा है।

एक जीना भी लगा हुआ है रेड कारपेट दिख रहा है सफेद --

नीचे एक अम्मा सर पर हाथ रख कर खड़ी हैं और एक लड़का सीढ़ियों को देख रहा है।

और देखने से लग रहा है की यहां पर अभी ही बारिश हुई होगी।

और यहां पर एक लड़का भी बैठा हुआ है जो शाय़द ढोल या तबले को बजाने का प्रयास कर रहा है।

बल्ब भी लगी हुई है और नीचे का नजारा हरा भरा है ऊपर--

ये काले रंग की गाय लग रही है जिसके पीछे एक लड़का और एक महिला भी खड़ी हुई है।

मेज की कुर्सियां रखी हुई हैं बगल में नीचे हरे रंग का कारपेट है।

और यहां पर काफी प्रकार के फूल पत्तियाँ या पेड़ भी लगे हुए हैं एक पेड़ जो छांव दे रहा है और ऊपर आसमान बिल्कुल भी साफ है।